जिस पर प्लास्टिक भी लगी हुई है।

कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

एवं चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

पिले और लाल रंग की एक दीवार भी नजर आ रही है।

कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

यह एक ढाबे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहा एक टैंकर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और एक लोहे का रॉड भी नजर आ रहा है।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

तथा चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

सफेद और हरे रंग की तार भी नजर आ रही है।

एवं लोहे के कई सारे रॉड भी नजर आ रहे हैं।

तथा उस पर केला सेब अमरूद अनार रखा हुआ है।

और कुछ सफेद रंग के पत्थर भी नजर आ रहे है।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

यह एक पेट्रोल पम्प का दृश्य दिखाई दे रहा हैं।

और कुछ घर भी नजर आ रहे हैं।

यह एक रूम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और एक सोफा भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।